और एक पोस्टर भी रखा है स्टेज पर डांस भी हो रहा है।

नीचे टेबल्स रखी हुई है सामने खिड़की है खिड़की कंच की है कंच के बाहर लोहा लगा हुआ है ब्लैक कलर का।

नीचे फर्श है फर्श पर टाइल्स है और टाइल्स पर सफाई हुई है।

जो स्टेज के नीचे डांस कर रही हैं सामने परदा लगा हुआ है।

इसकी आंखें चमक रहीं वाइट कलर की गाय के गले में--

कुछ का ग्रीन है कुछ फूलों का कलर येलो है कुछ ब्लू है।

एंड सारी की सारी गाड़ी सजावट है और कारी गाड़ी के बंपर पर भी--

जिस पे काफी सारे लोग घर बनाते हैं जैसे कि वही घर ये बन चुका है।

इन्होंने दोनों ने अपना ग्रीन कलर के कपड़े पहन रखे हैं नीचे से लाइट्स की तारे निकाली--

जो ये जीम है उसमें नीचे ब्लू कलर का पर्दा दिख रहा है एंड ऑरेंज कलर के कलर की चारों तरफ से बाउंड्री है यहां पर सफेद कलर की--

और यहाँ पर लोग ऑफिस में बैठ कर के काम कर रहे हैं जो काफी सारे लोग हैं एंड पंखे लगे हुए हैं।

दो लोग सो सकते है यहां पर दो कंबल रखे हुए है डबल बेड के ऊपर बेडशीट लगी हुई है दो तकिये है जिनके कवर निकले हुए है यहां पर अ रेड कलर का बेड एक पर एक किसान बना हुआ है।

नीचे फरश लगी हुई है। चारों तरफ से दीवाल है सामने एक खिड़की दिख रही है जो काफी छोटी खिड़की दिख रही है।

कोई दिख नहीं रहा है बाकी पंख लगा हुआ है व्हाइट कलर की पुट्टी है चारों तरफ से दीवाल में।

ये व्हाइट कलर का निशान है अं चेहरे पर उसने माइक्स मास्क लगा रखा है।

सभी ने मास्क लगा रखा है जिनमें से कुछ लोगों ने सर पे भी कुछ लगा रखा है और एक इंसान ने ब्लैक कलर का चश्मा लगा रखा है सारे--